इस फोटो में मुझे बॉक्स दिखाइ दे रहे--

इस फोटो में मुझे मैदान दिखाइ दे रहा है।

इस फोटो में मुझे हिरण दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहें हैं।

इस फोटो में मुझे महिलाएं मुझे कसरत करती हुई दिखाई दे रही हैं।

इसमें मुझे गाड़ी दिखाई दे रही है।

इसमें मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे--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

इस फोटो में बहोत सारे प्लास्टिक के पाइप दिखाई दे रहे हैं।

इसमें मुझे आदमी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे टेबिल दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे गेंदे के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इसमें मुझे बड़ी बड़ी टैबले दिखाई दे रही है।

इसमें मुझे कुर्सी दिखाई दे रही है।

इसमें मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे गाड़ियाँ दिखाई दे रही है।

इसमें मुझे गड्ढे खोदे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी दुकाने दिखाई--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

इसमें मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

इसमें मुझे ढलता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा टेबल दिखाई दे रहा है।